लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक रेलिंग दिखाई दे रही है।

पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं अच्छा क्लीन दिखाई दे रहा है।

इनमें बने हुए हैं और हमें पीछे दीवार में एक मगर की आकृति बनी हुई दिख रही है।

ए हमें यहां पर लाइटे बहुत सारी दिख रही है एक ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।

येलो है और हमें यहां एक रोड दिखाई दे रहा है साइड में हमे एक --

मार्कण्डेय इस मंदिर में आपकी हर मनोकामना पूरी हो।

लहराते हुए दिख रहा है निचे हमें --

अलग-अलग एक्सरसाइज की अलग-अलग मशीने रखी हुई दिख रही है जिनका कलर ब्लैक और येलो है।

एक बच्चे को गोदी में रखे हुए है।

अ अ हमें सामने लिखा हुआ दिख रहा है शासकीय हवन जगजीवन महाविद्यालय गया।

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पाइप लगा हुआ है व्हाइट कलर का है ।

हमें यहाँ पर एक वाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है।

हमें यहाँ पर ये बहुत सारी बिल्डिंगे बनते हुए दिखाई दे रही है कुछ बन चुकी है कुछ पर काम लगा हुआ हैं।

जिसमें सामने लिखा हुआ दिख रहा है एल्ससियर फॉरेस्ट ।